इस इमेज में सामने ऑफिस दिखाई दे रहा है।

और पिंक कलर कि बिल्डिंग नजर आ रही हैं यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे --

इस इमेज में सामने यहां पर आइसक्रीम पार्लर --

और पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

जहां पर पगड़ी पहने तीन लोग नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति नहाता नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर बिल्डिंग भी नजर आ रही --

कुछ लोग काम करते नज़र आ रहे --

और गर्ल्स कॉलेज लिखा नजर आ रहा--